सूट्स रखे गए हैं और यहां--

तो जैसा कि आप देख--

पत्ते हैं यहां पर चार फ्लावर पॉट --

कैरट और जिंजर और ऑनि --

और उसके बहोत सारे--

डैमेज हो चुके हैं।

बहोत सारा ग्रॉसरी आइटम मिलता हैं और यहां पर

गाड़ी खड़ी हो रखी--

बिरयानी बनाई जाती है और यहां पर सब लोग कहते हैं।

और यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं।